इस चित्र में हमे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक चित्र दिखाया गया है जहां पर सफेद रंग का पेंट किया गया है दीवालों पर।

छत पर लाइटें लगी हुई है और कुछ डोर भी बनाए गए हैं। कॉलम भी है।

और जिनपर पिलो रखे हुए है सोफे देखने में नीले रंग के है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके पास दो कुर्सियां रखी हुई है पीछे एक मेज रखी हुई है।

इसमें दो आदमी खड़े हुए हैं और फोन पे बात कर रहे--

इसमे चार पहिए पैर लगा रखे है जिसके पास तीन आदमी खड़े हुए हैं।

पीछे एक लोहे का पिलर लगाया गया है और पीछे एक बिल्डिंग भी है।